इनमें कुछ फूल दिखाई दे रहा है टेबल पे रखा हुआ।

इस दृश्य में एक बाइक दिखाई दे रहा है जिसपर दो व्यक्ति सवार हो करके जा रहे हैं।

इस दृश्य में सामने दरवाजा फूल का माला बना करके लटकाया हुआ है।

नीचे में बाल्टी दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का है उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है पीले रंग का।

नीचे में एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है लाल रंग का और उसके आसपास बहुत सारा लाइट जल रहा है सफेद रंग का और सामने में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

आस पास में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

और बाहर में एक व्यक्ति खड़ा नीले रंग का शर्ट पहन करके।

इस दृश्य में बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है नीचे में।

ऊपर में बोर्ड पे लिखा हुआ है कुछ हरे रंग से और चाय बनाया हुआ है।

इस दृश्य में बहोत सारे व्यक्ति दिखाई गए है जिन्होंने अलग अलग रंगों का वस्त्र पहना हुआ--

अंदर में भी दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अलग अलग रंगों का वस्त्र पहना हुआ है।

महिला का चित्र बनाया हुआ है।

एक व्यक्ति ने अलग कपड़ा पहना है दूसरे व्यक्ति ने भी अलग पीछे में बुद्धा जी का फोटो दिखाई दे रहा है।

सामने में भी एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारा खिलौना टंगा हुआ है।

इस दृश्य में सामने में एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारा चीज छापा हुआ है जो खाने का चीज है।

सभी के बस में खिड़की लगे हुए हैं और बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो बस के सामने खड़े हैं।

जिनका रंग लाल गुलाबी पिला हरा सफेद और ये सभी चीज कागज के बने हुए हैं।

और एक तार दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला है।

इस दृश्य में ट्रैक्टर दिखाई दे रहा--

इसका रंग नीला है जिसके पीछे हल लगा हुआ है।

पीछे आसमान खुला दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर सफ़ेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।